यह एक नर्सिंग कॉलेज है यह कॉलेज बहुत बड़ा है।

यहाँ पे बहुत अच्छी नाश्ता मिलती है।

इस दुकान में सभी तरह के सामान रखे हुए हैं।

स्टेशनरी समान उचित मूल्य पर मिलता है।

यहाँ पे झूला लगा हुआ है।

यह एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. है । इस ए.टी.एम. में बहुत सारे लोग --

जैसे कि टमाटर मिर्ची भींडी प्याज--

इस सड़क पे --

यह एक गाड़ी का शोरूम है। इस शोरूम में में--